अह मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं दो आदमी।

ये कोई मेडिकल शॉप जैसा लग रहा है जिसमें आगे आजू बाजू में सब खाने बनाए हुए जिसमें सब दवाइयां सब रखी हुई हैं ऊपर एक पंखा दिख रहा है।

और नीचे एक आदमी नीचे भी सब्जी अ टाइल्स लगी हुई हैं ब्लैक और ग्रीन कलर की--